और आसपास के मकानों के ऊपर और घरो के बालकनी में भी बहोत सारे लोग खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं।

बोहोत सारे लोग जो काम कर रहे हैं | जमीन पर लोहे का रॉड --